मुझे एक कमरा दिखाई दे रहा है। जिसमें एक कुर्सी डली हुई दिखाई दे रही है। साइड टेबल है। टेबल के ऊपर एक घड़ी दिखाई दे रहे हैं। घड़ी के बगल में एक फोनपे का क्यू.आर. कोड दिखाई दे रहा है। कुछ फाइलें रखी हुई दिखाई दे रही है पीछे।

और वो ब खंबे के बगल में पेड़ दिखाई दे रहा है। इस तरफ एक ऑटो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक आदमी साइकिल पर क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहा है। उसकी साइड में एक लड़का खड़ा दिखाई दे रहा है।

अ मंदिर के दोनों तरफ एक घर दिखाई दे रहा है। ओ एक जिओ डिजिटल लाइफ का बोर्ड लगा हुआ है। नीचे एक आइडिया फोर जी का बोर्ड लगा हुआ है और दो मोटरसाइकिल साइड में खड़ी हुई दिखाई दे रहे --

बिजली के तार दिखाई दे रहा है और कार्नर पे (पर) बहोत (बहुत) सारा कीचड़ दिखाई दे रहा है और कुछ लकड़ी जैसे डले हुए दिखाई दे रहे हैं।

मुझे एक बहुत बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है। नदी के ऊपर एक ब्रिज दिखाई दे रहा है। ब्रिज में से पानी इस तरफ से उस तरफ जाता दिखाई दे रहा है।

मुझे एक किचन दिखाई दे रही है किचन वाइट और ब्लू कलर की है| ये दिखाई दे रहे हैं।